अंदर बहुत बड़ी-बड़ी टी.वी. याँ स्क्रीन रखी हुई है एल.इ.डी. स्क्रीन --

और ऊपर नीला आसमान सफेद बादलो के साथ।